इस तस्वीर में कुछ लोग हैं जोकि पेट्रोल पंप पर आए हुए हैं।

एक बुक के शोरूम को दिखाया है।

पीले और आसमानी रंग से बना हुआ है आसपास कुछ लोग चल रहे हैं।

खाने की टेबल को दिखाया है जहां कुछ लोगों ने खा के रखा हुआ है यहां --

इन पौधों में फूल उगे हुए हैं।

और स्कूल के आस पास बहोत सारी झाड़ियां हैं पेड़ है जो दिखने में काफी अच्छा है।

और आसपास एक बिल्डिंग है उसे बिल्डिंग का कलर ब्लू है उसे बिल्डिंग में छोटी छोटी खिड़कियां है।

इस गार्डन के आसपास बहोत सारी घास बिछी हुई है और उसी के पास बहोत सारे पेड़--

गाड़ी के बोनट को सही कर रहे हैं तो दूसरा नीचे बैठ के टायर साफ कर रहा है।

इस तस्वीर में गार्डन को दिखाया है।

इस लड़की के आसपास बहोत सा--

इस शॉप में बहुत सारी चीजें और फ्रूट्स रखे हुए हैं एक आदमी --

यहां की प्लेटिंग भी बहोत अच्छी है।